हरी पत्तियाँ दिख रही है।

सीढियाँ दिखाई दे रही है ऊपर की और अ फूल लटक रहे है।

यह एक जगह का चित्र है यहाँ पर गोल-गोल रिंग दिखाई दे रही है कुछ फिसल पट्टियाँ दिखाई दे रही है।

काफी सारे लोग दिख रहे है गड़िया खड़ी है पीछे की ओर बिल्डिंग दिख रही है एक बिल्डिंग का रंग पीला और दूसरे का सफेद है ऊपर की ओर आसमान दिख रहा है।